यहाँ पर हमें एक आदमी दिख रहा है जिसके हाथ में कुछ सामान है। यह जगह नापने का मशीन है इसके हाथ में।

एक सामने वजन करने वाला तराजू दिख रहा है एक सफेद कलर बाल्टी रखा हुआ है स्कैनर भी रखा हुआ है एक अ पीछे आदमी मच्छी कट कर रहा है एक आदमी टोपी लगाकर के बैठा हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ पर हमें एक बोहोत ही बड़ा महाविद्यालय नजर आ रहा है। महाविद्यालय के यहाँ पे बोहोत सारे पिलर लगे हुए हैं। पिलर के जस्ट ऊपर बोहोत सारे लोहखण्ड नजर आ रहे हैं।

चर्च में खिड़की नजर आ रही है। हमें सामने चार खिड़की दिख रही हैं। एक ऊपर दिख रही है। तीन नीचे दिख रही।

और एक गेट बना हुआ है। गेट तो खुला हुआ है। नीले कलर का बोर्ड लगाए हुए हैं।